नारियल से बनाते है और अच्छी लगती है नारियल की चटनी इटली के साथ --

और ये अच्छा लगता है। पहाड़ी इलाके में जो घर होते हैं। झोपडी होती हैं तो उन्हें देख कर कितने सुन्दर लगती हैं वो देखने में और अच्छा ही लगता है।

कलर के फूल मिलते हैं पैकेटो में मिलते है सेल कि तरह।

वो देखने में बहोत सुन्दर होते हैं बहोत अच्छी लगती हैं देखने में।

देखो इस पर ये जो मजदूर है ऐसे लेटे पड़े हैं। इस पर बैठ कर खाना खाते हैं और जब ये राशन पर बँटते हैं। ये सब के घरों में आते हैं देसी चावल।

और हमारे भी घरो में आते है बताओ इन देसी चावलों को कैसे खाएंगे जो बच्चे ऐसे कर के मतलब ये मजदूर ऐसे लेटे है उन पर कितना गन्दा लग रहा है ऐसे करना नहीं चाहिए इन मजदूरो को --

पंख होते हैं न उसका उसकी पेंटिंग बनी हुई है और ये बोहोत सुन्दर लग रही है देखने में और मोर के पंख ऐसे भी सुंदर लगते हैं --

ये एक बहोत बड़ी नहर है। इसके आस-पास जो किनारे ब हैं वो बहोत सुंदर हैं। झीलें बनी हुई हैं। सीढ़ी बनी हुई है।